मुझे ये एक रूम की पिक्चर है।

बाहर रेड और येलो कलर की--

जहां पर बोर्ड पर कॉसमॉस लिटिल चैंप --